यहां पर बहोत सारे लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर दीवारों का कलर गरीन कलर का दिखाई दे रहा है।

शॉप की दीवार का कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा हैं।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

यहां पर कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है।

यहाॅं पर एक लोहे का गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

शोरूम में बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

झील का पानी गरीन कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर इसका लोगो येलो कलर का दिखाई दे रहा--

यहाँ पर कुल एक आदमी भी दिखाई दे रहा--

यहां पर पोल पर कुछ मीटर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक किरयाने की शॉप भी दिखाई दे रही है।

हां पर बहोत सारे ट्रक भी दिखाई दे रहे--

शॉप में लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।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

मेरे सामने एक श मौल दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ गमले भी रखे हुए दिखाई दे रहें--

और बिल्डिंग में बहोत सारे कमरे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर बिल्डिंग का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

पर बहोत सारी लायटे भी लगी हुई दिखाई दे रही।